पार्क के आस पास--

ये सुजुकी का शोरुम है।

ये ब्लैक कलर की कार खड़ी है।

ये कुछ लोग हेलीकॉप्टर पर चढ़ने जा रहे हैं।

इन सब ने काफी स्मान बैग पकड़े हुए हैं।

इनके आसपास काफ़ी--

नंबर पर ब्लैक कलर की कार खड़ी है।

ये तीनों बॉटल्स ट्रांसपेरेंट हैं।

बकरियों का रंग सफेद काला एंड भूरा है।

मैं भी बच्चों के लिए--